इस दृश्य में एक सुंदर नजारा दिख रहा है तथा पत्थर पर व्यक्ति बैठा है वह पानी--

जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है।

यहां पे फूल बेचने वाले बहुत खुश हुए हैं।

और गाड़ियां भी पार्किंग पर लगी हुई है।

इधर काफी सुंदर नजारा दिख रहा है।

मंदिर में काफी सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं।

यहां बाइक भी पार्क हुई है।

आगे सामने एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

यह छोटा बच्चा यहां पर बैठा हुआ है।

जैसा कि यह पिक्चर में हम देख पा रहे हैं।

यहां काफी कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है।